के बालो में कुछ फूल के मा गजरा लगा हुआ है।

तस्वीर में हमें बहोत सारे बैलून नजर आ रहे हैं जो बैलून का कलर है येलो और रेड ।

तस्वीर में हमे दो वाइट कलर के कार नजर आ रहे हैं।

और टेबल भी जो इस पे बैठकर जिम कर सके--

इस तस्वीर में हमें बहुत सारे गमले नजर आ रहे हैं।

एक ब्लू कलर का गेट भी दिखाई दे रहा है और एक टूल भी है।

सिरि भी दिखाई दे रहे हैं।